मुझे एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बड़े बड़े पेड़ स्प्रूड हिल भी दिखाई दे रहा है।

उन लोगों के पीछे स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

इस बिल्डिंग के बाहर दो बाइक पार्किंग करते हुए दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के उस पार पेड़ पौधे भी दिखाएं--

मुझे यहां एक फर्नीचर की दुकान नजर आ रहा--

मुझे यहां इस कमरा के अंदर बहुत सारे स्टैचू म्यूजिक बजाते हुए नजर आ रहा है।

वहां एक ड्रम भी हैंग करते हुए नजर आ रहा है।

नदी के किनारे वहां मुझे एक पत्ता घर दिखाई दे रहा है जहां लोग बैठा हुआ है।

ब्लैक कलर के पहना हुआ है।

उस घर के बाउंड्री वॉल व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

फाउंटेन के सामने एक स्टूल भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के चारों तरफ पेड़ पौधे से ढका हुआ है।

शॉप के चारों तरफ ग्रीन और वाइट कलर के बैलून से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक गेट नजर आ रहा है गेट के ऊपर एक लंबा सा क्रॉस भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक रूम में दो लड़की तीन लड़के खड़ा होते हुए नजर आ रहा है।

सड़क के उस पर मुझे एक वाइट कलर की कार भी दिख रहा है।

मुझे वहां गेट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक पोल भी नजर आ रहा है।

इस फेंसिंग के अंदर एक लायन बैठे हुए नजर आ रहा है।

लायन के पीछे बहोत सारे ग्रीन ग्रीन ग्रास भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां खूब सारा गाड़ियां दिखाई दे रहा है।

बड़े बड़े जिलेन में कुछ कलरफुल लिक्विड फोम का भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे ब्लूंस भी दिखाई दे रहा--

इस जंगल में चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां बहुत सारे लेबर्स काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

आंटी साथ मुझे वहां बहुत सारे सब्जियां भी नजर आ रहा है।